नमस्कार दोस्तों multiple plots पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे
figure कमांड का उपयोग करना
legend कमांड का उपयोग करना
प्लॉट्स के मध्य स्वीच करना और उन सब में कुछ ऑपरेशन्स करना जैसे प्लॉट्स सेव करना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1404 ऑपरेटिंग सिस्टम
python 343
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इंटरैक्टिव रूप से प्लॉट्स का उपयोग कैसे करें
प्लॉट कैसे संयोएं
यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर पूर्वापेक्षा पाइथन ट्यूटोरियल्स देखें
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
अब टाइप करें ipython3 और एंटर दबाएं
pylab package आरंभ करें
कमांड linspace का उपयोग करके अपने प्लॉट के लिए प्वाइंट्स का सेट बनाएं
टाइप करें x equals to linspace ब्रैकेट्स में 0 comma 50 comma 10
अब इन प्वाइंट्स का उपयोग करके एक सामान्य sine curve बनाएं
जैसा कि हम देख सकते हैं यह sine curve smooth curve नहीं है इसका वास्तविक कारण क्या है
यह हुआ क्योंकि हमने कुछ प्वाइंट्स चुने जो 0 से 50 के इस इस बडे अंतराल के लिए 10 है
plot function analytical function को प्लॉट नहीं करता है
analytical function द्वारा दिए गए प्वाइंट्स को प्लॉट करता है
अब 0 और 50 के मध्य 500 प्वाइंट्स प्राप्त करने के लिए linspace कमांड का उपयोग करें और sine curve फिर से बनाएं
टाइप करें y equals to linspace ब्रैकेट्स में 0 comma 50 comma 500
plot ब्रैकेट्स में y comma siny
अब हम smooth curve के साथ sine curve देख सकते हैं
ध्यान दें हमारे पास एक दूसरे पर ओवरलेड दो प्लाट्स होंगे
pylab में डिफॉल्ट रूप से सभी प्लॉट्स ओवरलेड हैं
दो ओवरलेड प्लॉट्स के मध्य अंतर करने के लिए हम legend कमांड का उपयोग करते हैं
टाइप करें legend ब्रैकेट्स में square brackets sinx comma siny
legend कमांड पैरामीटर को strings की सूची के रूप में लेता है
फिर यह बने हुए क्रम के अनुसार प्लॉट को strings असाइन करता है
अब हम देख सकते हैं legends plot area पर two sine curves प्रदर्शित कर रहा है
ipython टर्मिनल में प्लॉट विंडो को साफ करने के लिए अब clf टाइप करें
विडियो रोकें इस अध्याय को हल करने की कोशिश करें फिर पुनः विडियो चलाएं
दो प्लॉट्स बनाएं पहला प्लॉट y equals to 4x square रूप का parabola बनाया जा रहा है
और दूसरा minus 5 से 5 के अंतराल में y equals to 2x plus 3 रूप की straight line बनायी जा रही है
प्रत्येक प्लॉट क्या कर रहा है यह दर्शाने के लिए legends का उपयोग करें
हल के लिए टर्मिनल पर जाएं टाइप करें x is equal to linspace ब्रैकेट्स में minus 5 comma 5 comma 100
हम निम्न कमांड्स का उपयोग करके भिन्न रंगों में दो प्लॉट्स प्राप्त कर सकते हैं
plot ब्रैकेट्स में x comma 4 multiplied by ब्रैकेट्स में x multiplied by x
plot ब्रैकेट्स में x comma 2 multiplied by x plus 3
अब प्लॉट्स पहचानने के लिए legend जोडेंगे
टाइप करें legend ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में r इंवर्टेड कॉमास में dollar y is equal to 4 x square dollar comma r इंवर्टेड कॉमास में dollar y equals to 2x plus 3 dollar
हम देख सकते हैं legend प्लॉट में जुड गया है
आगे हम प्लॉट्स के मध्य स्वीच करना सीखेंगे और और ऑपरेशन्स क्रियान्वित करेंगे जैसे कि प्लॉट्स सेव करना आदि
अब देखते हैं कि इसे कैसे पूरा करें लेकिन आगे बढने से पहले अपनी स्क्रीन को साफ करें टाइप करें clf
टाइप करें x equals to linspace ब्रैकेट्स में 0 comma 50 comma 500
individual plots पर अधिक नियंत्रण करने के लिए हम figure कमांड का उपयोग करते हैं टाइप करें figure1
plot ब्रैकेट्स में x comma sinx comma inside inverted commas b
figure2
plot ब्रैकेट्स में x comma cosx comma inside inverted commas g
अब दो भिन्न आकृतियों में हमारे पास दो प्लॉट्स हैं sine curve और cosine curve
figure कमांड एक argument के रूप में एक integer लेता है
सभी प्लॉट कमांड्स हम आगे चल कर चयनित प्लॉट पर लागू करते हैं
उदाहरण के लिए हम प्रत्येक प्लॉट को अलगअलग सेव कर सकते हैं
टाइप करें title ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में cosx
savefig ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में cosinepng
figure1
title ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में sinx
savefig ब्रैकेट्स में इंवर्टेड कॉमास में sinepng
आकृतियां वर्तमान कार्यरत डाइरेक्टरी में होंगे अब दोनों प्लॉट विंडो बंद करें
विडियो रोकें इस अध्याय को हल करने का प्रयास करें और फिर पुनः विडियो चलाएं
एक आकृति के रूप में y equals to x रूप की एक लाइन और y is equal to 2x plus 3 रूप की अन्य लाइन खींचें उन्हें सेव करें
हल के लिए टर्मिनल पर जाएं
type करें
plot ब्रैकेट्स में x comma x
अब दूसरे plotting area को बनाने और आकृति को प्लॉट करने के लिए figure का उपयोग करें
type करें
हम निम्नानुसार आकृति सेव करेंगे
type करें
figure2
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं हमने सीखा
figure कमांड का उपयोग करना
legend कमांड का उपयोग करना
प्लॉट्स के मध्य स्वीच करना और उन प्रत्येक पर कुछ ऑपरेशन्स क्रियान्वित करना जैसे प्लॉट्स सेव करना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
sine और cosine curve को पहचानने के लिए कौन सी कमांड होगी
और उत्तर हैं
legend कमांड legend ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंवर्टैड कॉमास में sinx comma inside inverted commas cosx
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें
कृपया पाइथन पर आपकी सामान्य क्वेरी को इस फोरम पर पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैअधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से में जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद